तलाब में तैरते हुए नज़र आते हैं लोग बेहद पसंद होते हैं ऐसी जग --

पढ़ाई बहुत ही अच्छी है बहुत ही मेहनत से पढ़ाया जाता है जो छात्र-छात्राओं को बहुत ही मेहनत से पढ़ने --

हम्म देखने में बहुत ही अच्छी है और एक साथी रीती रिवाज के साथ होने के बाद बहुत ही --

ए.टी.एम. दिखाई बायो ए.टी.एम. दिखाया गया है जो की बेहद ही अच्छी और सुंदर जगह पे है । बहुत लम्बी- चौड़ी ए.टी.एम. है और लोग चौबीस घंटा अवेलेबल --